यहां बच्चे सभी ड्राइंग बना रहे हैं और ये इन सभी बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता हो रही है इसमें या सभी बच्चे नई-नई ड्राइंग बना रहे हैं।

दुकान है यहां हमें अपनी जरूरतों का हिसाब से सामान मिल जाते हैं यहां हमें सभी सामान उपलब्ध रहते हैं खिलौने के सामान खाने के सामान यहां यहां हमें सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हो जाते हैं।